इस जिम में काफी सारे जिम करने वाला समान लगा हुआ है।

इस रोड में टरक लगे हुए है।

में कुछ मजदूर लोग कम कर रहे हैं।

ब्लू और लाल कलर का मैट भी लगा हुआ है और डम्बल भी रखा हुआ है।

इस मस्जिद के बाहर कुछ बाइक पार्किंग किया हुआ है।

इस मस्जिद का गेट लोहे का लगा हुआ है जीसका कलर ब्ल्यू है।

इस देश में एक मछली बाजार का चित्र है।

इस दुकान के बाहर कुछ लेडिस और कुछ आदमी लोग खड़े हैं।

इस दुकान में बहुत सारे साइकल लगाए हुए हैं।

अ पांच ए_सी का आउटडोर भी लगा हुआ है।

वाटरफॉल में चट्टानों का बीच से पानी गिर रहा है।

बहुत बड़े बड़े पत्थर और चट्टान भी है।

ए_टी_एम के बाहर कुछ लेडिस और आदमी लोग खड़ा है।

और बांस वाला खंभा का झोपड़ी बना हुआ है।

चेयर को व्हाइट कलर के कपड़ा से कभर किया हुआ है।

इस दृश्य में एक सैलून दुकान का चित्र है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा बस स्टैंड का चित्र है।

इस घर के बाहर पानी का फुआरा जैसा झरना लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा गार्डन का चित्र है।

इस स्टेडियम के बाहर गेट के पास एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बीरसा रेलवे स्टेडियम लिखा है।